मोटरसाइकिल और कार भी खड़ी हुई है।

यह एक बहुत पुराना मकान है।

और यह दिवाल पत्थर से बनी हुई है।

और इसके अंदर बहुत सामान रखे हुए हैं।

और कुछ आदमी बैठे हुए है शीशे में दिख रहे है।

और यह इसमें बहुत सारी खिड़कियां भी लग रही है।

और यहां एक लवे का खंभा भी गड़ रहा है।

और एक आदमी फोटो खांच रहा है फोन से।

और ये बहुत खूबसूरत है।

और एक सिमट के गट्ठा भी रख रखा है और एक बाल्टी है।